यहां एक लाइन में तीन ब्लैक चेयर तथा चार ग्रे कलर की चेयर लगी हुई है।

इसके ऊपर ड्रिफ्ट स्विंग लिखा है।

तस्वीर किसी शॉप के बाहर से ली गई है।

यहां सभी फूलों को रेड बकेट में रखा गया है।

यहां कुछ चेयर्स भी रखी हुई हैं।

यहां एक कुलर और एक फैन भी लगा दिख रहा है जो की पर्सनल यूज के लिए है।

इस पिक्चर में सामने एक बिल्डिंग है जो की पिंक और वाइट कलर की प्रिंटेड है।

यहां आसपास कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जोकि आधी सफेद है और आधी ग्रे कलर की मार्बल से सजी हुई लग रही है।

यहां बड़े अक्षरों में हंड्रेड परसेंट ऑटोमेशन हंड्रेड परसेंट क्वालिटी एश्योरेंस लिखी दिख रही है।

इसके आसपास काफी सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

यहां लाइन से काफी सारी बाइके खड़ी है।

यहां सभी छोटे छोटे पौधों को ईंटों से घेरा गया है।

यह पार्ट्स लकड़ी या चीनी मिट्टी की बनाई गई होगी।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

यह तस्वीर एक शॉप की है।

लंबे पोल में बहुत सारे बल्ब भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर रांची नगर निगम प्रॉमिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।